इस फोटो में काले रंग की सीढ़ियां दिख रही है पीछे बिल्डिंग है लाल रंग की--

अगल बगल में जो है यह तार सी दिखाई दे रही है।

ठीक है और पीछे मिट्टी और छोटे मोटे से ये--

और जितने भी लेडिस है उन्होंने साड़ी पहनी हुई है।

तो यहां पर ढाबा है तथा आपको पता ही क्या मिलता है खाने को।

रोटी सब्जी ठीक है चावल नान ये सब यहां पे मिलता है।

और यहां पे कुछ पैकेट लगे हैं खाने पीने के ठीक है।

मोबाइल नंबर लिखा है नाइन फोर वन सिक्स थ्री फाइव ।

जिसमें एक कार है सफेद रंग की।

और यहां पर एक ए_सी भी लगा दिखाई दे रहा है एक काउंटर है जिसपे काफी सारी बोतले और एक किताब रखी हुई है।

सामने लड़की बैठी हुई हैं जिसके हाथ में फोन हैं।

इस फोटो में सामने लिखा है मार बीटू--

अह दो कुत्ते दिखाई दे रहे हैं ठीक है एक लैंप लगा हुआ है दो बल्ब लगे हुए हैं।

कारपेट बिछा हुआ है और रात का समय है सर्दीया है।

इस फोटो मे एक व्हाइट कलर की कार दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग में काफी सारे कलर का यूज़ किया गया है मल्टी कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

ठीक है बैंक मे पैसे जमा करने निकलवाने आते हैं खाता खुल--

और सड़क है जो सड़क होती है ठीक है।